यह एक तालाब है जिसके किनारे पर मकान दुकान मंदिर बने हुए हैं।

एक पानी के अंदर अच्छी सी सजावट सी बनी हुई क्यारियां है।

आगे टाइल्स लगी हुई है गार्डन बना हुआ है।